सामने स्टेज बनी हुई है जिसपे बोहोत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं।

व्हाइट कलर का पेंट है पोल लगे हुए है। कुछ आदमी उधर जा रहे है। बोर्ड लगे हुए है।

पेड़ लगे है। नीचे टाइल लगी हुई है। साइड में ग्रीन कलर की ग्रील --

सामने एक गेट है जो ब्लैक कलर का है। दो पोल लगे हुए हैं। उसके अंदर एक ग्राउंड है जहां पे --

सामने एक इमारत है जिसकी शर्त पे कुछ टींस लगे हैं लगे हैं। वहां पे बोहोत सारी बाइक्स खड़ी हैं।

सामने गार्डन है जिसमें बोहोत सारे ग्रीन कलर के शो प्लांट्स लगे हुए हैं। पेड़ लगे हुए हैं सामने उसके --

ये पार्क है जिसमें बोहोत सारी येलो रेड कलर की एक्सरसाइज --

सामने एक बुक शॉप है जहां पर बहुत सारी कलरफुल बुक --

टेलर की शॉप पे बोहोत सारे --

भगवान की मूर्ति रखी हुए आस-पास बहुत सारे लोग हैं रथ को बहुत सजाया है फूलों से और लाइटों से।

सामने एक डैम बताया है जिसके गेट दिखाया हुआ है जिसमे बोहोत सारा पानी है उसके --

बाकी शॉप्स में बहौत सारा सामान है दो बाइक्स बाहर लगी हुई हैं।

सामने एक इमारत है जो येलो रंग का पेंट किए हुई है इसमे बोहोत सारी --

रेलिंग लगी हुई है। बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है नीचे मार्बल लगा है। बाहर गाड़ी खड़ी है।

यहाँ पे एक वॉच लगी हुई है। छत डाली हुई है। सामने सीढ़ियां हैं ।

लगी है। सामने एक आदमी खड़ा है।

जो नाई है वो बाल काट रहा है। सामने शीशे लगे हुए हैं। ऊपर श --

फैन चल रहा है पीछे टी०वी० (T_V) रखा हुआ है। पर्दा लगा है।

बैलून से डेकोरेट हैउसके बाहर कुछ गमले रखे हुए हैं। सामने जाने के लिए सीढ़ियां हैं बाहर --

सामने बोहोत सारे ग्रोसरी का समान है। बोहोत सारे कलरफुल येलो रेड --

एक ऐ सी लगा हुआ है।

साथ में गली रास्ता जा रहा है।

सामने एक इमारत है जिसकी बाउंड्री पर टाइल लगी हुई है। बिल्डिंग पे --

घर को लाइटों से डेकोरेट किया हुआ है। बाहर पेड़ लगे हुए है छोटे-छोटे--

कलरफुल कपड़े रखे हुए हैं ऊपर छत है जिस पर लाइटस लगी हुई हैं। पीछे वॉल पे स्टि --

ये एक रिसॉर्ट है। सामने गार्डन है जिसमें ए --

नीचे उसके रेलिंग लगी हुई है। टाइल लगी हुई है। नीचे से कुछ लोग देख रहे हैं। पीछे उसके --

साफ कर रहे हैं। कुछ ब्लू कलर के डब्बे हैं।

सामने एक फूल है जिसके च-नीचे पिलर्स लगे हुएं। नीचे बहुत सारा पानी है।

यह एक गैराज की दुकान है। यहाँ पे अंदर बहुत सा गैराज का सामान रखा हुआ है। बाहर एक बाइक लगी हुई है।

सामने बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। डी.जे. लगे हुए। कुछ लोग डांस कर रहे हैं। कपल डान --